यह एक चित्र है इस चित्र में एक घर बताया जा रहा है उसके साइड में कुछ लोग टोकन लेकर खड़े हुए हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक पहाड़ बताया जा रहा है और उसके साइड में बहुत सी छोटे-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

और यह बहुत डेकोरेट भी किया गया है।

और इसमें बहुत सी वर्क भी नजर आ रहा है और इसके साइड में कुछ फूल भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

जिसके साइड में कुछ चेयर भी रखी हुई नजर आ रही हैं।

और इसके साइड में एक वैन भी खड़ी हुई है और उसके साइड में कुछ बाइक भी नीचे खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

यह एक चित्र है। इस चित्र में एक बड़ा सा हॉल नजर आ रहा है।

और इसके साइड में एक बड़ा सा गेट भी--

यह एक चित्र है इस चित्र में एक मच्छी की दुकान बताई जा रही है।

और कुछ चेयर भी रखी हुई नजर आ रही है और कुछ दुकानें भी अंदर नजर आ रही हैं।

चित्र में एक बालाजी की दुकान दिखाई दे रही है उसके सामने साइड में कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में बहुत सी चीजें रखी हुई नजर आ रही है चाबी के गुच्छे नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ चेयर रखी हुई नजर आ रही हैं और कुछ गिलास भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं पर्दे और कुर्सियाँ और यहाँ पे टेबल वगैरह सब रखा हुआ दिखाई दे रहा है।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

यह एक चित्र है यह चित्र में एक बहुत बड़ा सा--

यह एक चित्र है इस चित्र में एक मूर्ति नजर आ रही है जोकि बहुत सजी हुई है और इसके आसपास भी बहुत से लोग नजर आ रहे हैं।